और यह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यह बच्चे अंदर माथा टेक कर स्कूल के गेट पर माथा टेक कर अंदर जा रहे हैं और मैडमे भी स्कूल के गेट पर खड़ी हैं।

बोर्ड लगा हुआ है जहां की पार्क के अंदर एक गोल चक्कर बनाया हुआ है जिसमें की पारी जा रहा है और उसमें लाइट भी लगाई हुई है जो की रात को बहुत अच्छी लग रही हैं।

यहां पर काफी लोग ऊपर इकट्ठा हुए हैं।

और सामने ही कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जोकि बहुत अच्छी लग रही है।

खाली गमले भी है और साथ में कुछ भुट्टे अं रखे हुए हैं जोकि--

ये एक यहां पर एल_सी_डी लगी हुई है एल_सी_डी के बीचे में कुछ चल रहा है।

और साथ में एक फ्लाई ओवर बना हुआ है जोकि ट्रेन के नीचे से जा रहा है।

अह बादल भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ल--

अ बहोत लोग यहा पे खड़े हैं और उसी के साथ अ--

उनके साथ हि कुछ एक बंदा भी खड़ा है जोकि--

बहोत सुंदर तरीके से इनको देख रहा है और साथ में कुछ लोग और भी खड़े हैं जो बहोत अच्छे लग रहे हैं।

उसके साथ यह बहोत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है।

यहां पर एक बहोत ही बड़ा जो कि एक भवन बना हुआ है उसके साथ कुछ--

साइकल खड़ी है उसी के साथ कुछ लोग भी--

अअ दरख़त भी लगे हुए हैं उसी के साथ कुछ लोग --

हैं ये लोग आपस में अं बाते कर रहे हैं।

अ अंदर आकर बैठे हैं और यह बहोत ही बड़ा--